और शाल्ट और चाट मसाला भी रखा हुआ है।

पुल पे स्ट्रीट लाइट भी लगा हुआ है।

बहुत सारे आदमी बैठ के देख रहे हैं।

एक रेड कलर का फ्लैग बंबू पे टंगा हुआ है।

और बगल में एक बिल्डिंग भी है और सामने में एक पेड़ भी दिख रहा है।

अच्छा कान देखा जा सकता है और बाल भी देखा जा सकता है।

यह किसी का फार्महाउस दिख रहा है।

और सीढ़ी टाइप बना हुआ है जाने के लिए।

ऊं ये दो आदमी का फोटो है जो चट्टानों के अंदर में खड़ा हुआ है।

पास करने के लिए एक ब्रिज बना हुआ है।

और अगल बगल में बहुत सारे पेड़ है।

इसके पीछे एक टावर लगा हुआ है।

यह एक घर दिख रहा है जिसके ग्राउंड फ्लोर पे एक दुकान दिख रहा है।

इसके चारों तरफ पेड़ पौधे हैं।

इसके बगल में घर भी है और रूफ का कलर रेड है।

बोट बहुत पुराना दिख रहा है।